और बहुत सारी लेडिस है जो एक पिंक साड़ी में लेडी खड़ी है वो भी--

ये किचन है जहां पर एक रैक लगा हु--

एक मंदिर में आदमी पूजा कर रहा है यहां पर दो मूर्तियां रखी गई हैं उसके नीचे जो है एक गड़वी रखी हुई है जो कि जल चढ़ाने के लिए--

ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो तहसील कार्यालय रोहतक के नाम से है उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी है व्हाइट कलर की उसके आसपास गमले रखे हुए है।

साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई--

ये मंदिर है और जो कफी बड़ा है भूरे रंग की पौड़ियां है इसपे काफी सारी--

ये एक खिलौनों की दुकान है और उसमें बहोत अलग अलग तरह के खिलौने पड़े हुए--

और रोड के आस पास काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है और काफी अच्छा दृश्य लग रहा है।

ये बोर्ड जो लगा है किसी डॉक्टर की क्लीनिक का है जिसका नाम डॉक्टर --